इस पिक्चर में एक सुनसान रोड दिख रहा है और दो पोल दिख रहे हैं और --

सिल्वर कलर की दिख रही है। पीछे एक वाइट कलर की लाइट भी जल रही है और --

इस तसवीर में एक बच्चा है जो पानी में खड़ा है और बाकि सारे में बहुत ग्रीन - ग्रीन कलर की ग्रास दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसका सनराइज हॉस्पिटल नाम है।

और साइड में दो आदमी भी खड़े हैं और इस दूकान में बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ --

इस दूकान की सीलिंग में व्हाइट कलर के बहुत सारे लाइटें भी जल रही हैं और एक एयर कंडीशन भी दिखाई दे रही हैं।